फर्नीचर भी बहोत ही सानदार किया हुआ है।

एक कलर का डिब्बा भी है पास में बहोत ही बड़ा एक आटा की छलनी भी दिख रहा है।

काली शीशो वाली शॉप भी नजर आ रही है।

चारा भी रखा हुआ है घर के अंदर का नाजारा शानदार--

दो युवक घूमने को आई हुई हैं और--